यहाँ के टीचरस भी काफ़ी अच्छे --

यह एक काफ़ी सुन्दर लैंप है जहाँ एक छोटा सा नाईट होल गार्डन दिख रहे दिख रहा है जहाँ नाईट में सारी लाइटिंगे शुरू की जाती है उस टाइप दिख रहा है।

यह एक एरोप्लेन है जहाँ ये लँड हुआ है।